और देखने में बहोत ही सुन्दर लग रहा है लाइटिंग भी बहोत है बहुत ही अच्छा--

एक ब्यूटी पार्लर है जिस में एक फोटोफ्रेम लगा हुआ है तथा एक सोफा सेट भी है जिसमे बहुत सारी कोस्मेटिक क्रीम रखी हुई है।

यह एक कांच और लकड़ी का बॉक्स है जिसके अंदर पुराने से पुराने--

यह एक तालाब है जिस में एक बहुत बड़ा जहाज है।

तथा उसके आजु बाजु बहुत सारे पत्थर डले हुए है जिनको कई कलको से पेन्ट किया गया है छोटे छोटे पेड़ पोधे भी लगे हुए है तथा एक स्कूटी भी है बाहर से बाउंड्री भी की गई है धुंधला दृश्य दिखाई दे रहा है।

ऐसा लग रहा है जैसे की कही पर एक महा-पुरुष की कथा चल रही हो जिसमे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए।

यह एक मोबाईल की शॉप है जिसमे दो कंप्यूटर रखे गए हैं तथा--

यह एक कंप्यूटर शॉप है जिस के बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

--था वाईट कलर की लाइटिंग भी है बहुत सारे एवोर्ड भी रखे हुए है एक एल_सी_डी भी है और चेयर भी रखी हुई है और भगवान की तस्वीर--

यहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमे बहुत सारी कारो को रखा गया है तथा बाहर एक टेंट भी लगाया गया है और बाहर एक वाचमैन भी खडा है और बहुत सारे-- ।

यह एक पार्क है जिसमें बहुत सारे झूले हैं और फिसलपट्टी हैजिसमे बहुत सारे--

छोटी-बड़ी सभी पानी नहीं होने के कारण वो ऐसे ही डली हुई है तथा पुराना सुखा एरिया होने के कारण यहाँ पर कोई भी नहीं --

यह एक एनिमल्स हॉस्पिटल है जिसमे एक डॉग को ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है।